बरामदा में एक फेंसिंग अच्छा से वेल्डिंग करके बनाया हुआ है।

और यहां पर कोठेस कॉफी लिखा हुआ है और सीन्स नाइनटीन फॉरटी नाइन ।

बहुत सारा आदमी लोग रुका हुआ है एक सूमो भी रुका हुआ है।

ये एक बहुत बड़ा बस लगता है।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

शटर खुला हुआ है और लाइट भी जल हुआ है।

यहां पर तीन बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग डांस कर रहा है।

एक बड़ा सा गाड़ी दिखाई दे रहा है।

और बच्चे बड़े सब दिख रहा है यहां पर।

वहां पर एक इलेक्ट्रिक का पोल भी दिख रहा है।

ये एक डीलर है बाइक का।

और बहुत सारा जंगल दिखाई दे रहा है।

बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है।

और वहां पर मिरर भी दिख रहा है।

सोफा भी दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा सोफा ।

सामने एक जे_सी_बी और नीचे ऊपर करकट दो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

ऊपर लाइट भी बहुत सारा जला हुआ है।

और उसके सामने पेपर भी न्यूजपेपर भी दिखाई दे रहा है।

उधर भी एक बंदा बैठा हुआ है।

और उसके सामने पैकेट वाला साफ भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर नौ लोग दिख रहा है और--

सफेद कलर की कपड़ा पहना हुआ है।

टीचर लोग भी देख रहा है।

वहां पर बहुत सारा पौधा भी देख रहा है।

और पीछे में भी पब्लिक लोग बहुत है।

यहां पर एक कार है।

और एक दरवाजा खुला हुआ है।

उसके आगे पर एक बंदा खड़ा हुआ है।